लाल कलर के बहुत सारी यह फोम की चेयर दिख रही है। बहुत सारे लोग रहते हुए दिख रहे है। धन्यवाद।